यह सुबह या शाम को खींची गयी है ये फोटो ये पहाड़ वाले इलाका में है जिधर बड़ा पहाड़ है यहाँ --

अरे स्कूल का शीशा में लउक रहा --

बिच-बिच में आदमी है चारो साइड से रखा हुआ है।

एक आदमी धो रहा है चप्पल पहना हुआ है।